यह एक मेडिसिन का दुकान है और यहां पे बहुत सारे दवाइयां मिलते है।

और यहां पे एक अम खिड़की भी है जो कि उन उसके ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

और यहां पे सफेद कलर का भी एक--

और पीछे बहुत सारे लोग सामान लेने के लिए आए हुए हैं।

और सामने शीशे भी लगे हुए हैं।

और यहां पे साइड में बहुत ही बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यह एक टेंट लगाया हुआ है इस सिपाही ने।

और सभी लोग सफेद कपड़ा पहन के आये थे उन लोगो का कपड़ा रंगीन हो गया है।

यह एक फंसन है और यहां पे बहुत सारे लोग आए हुए--

और यहां पे बहुत सारे अपराधी रहते लाए हुए हैं।

और एक व्यक्ति हैं जो अंदर के जा रहे हैं।

यह एक नदी है और इस नदी में आज कोई पूजा करने के लिए आए हुए हैं सभी गांव वाले।

और यहां पे बेड पे बहुत सारे औरत बैठे हुए हैं।

और यहां पे हॉस्पिटल मे बहुत सारे पंखे भी लगे हुएं हैं।

और उपर में एक पंडित वैठ के पूजा कर रहे हैं।

और यहां पे बहुत ही अच्छा से इसको सजाया हुआ है।

यहां पे एक भी टैम्पू भी है पीला कलर का जो की और यहां पे एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति भी जा रहे है।

और यहां पे बहोत सारे कुर्सियां भी लगे हुए हैं।

यह एक जिम है और यहां पे बहुत सारे लोग जिम करने के लिए आते हैं।

राइट साइड में बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं।

यहां पे पाइप से पानी दिया जा रहा हैगार्डन मे ।

एन्ड में यहां पे दीवाल भी है और यहां पे पीछे साइड एक घर भी है।

यहां पे बैग भी रखा हुआ है साइकिल में।